बोहत सारे यंहा पे बाइक है स्कूटी है पेड़ है खंबा है ।

यंहा पर चेयर लगा है एक बड़ा सा शीसा लगा है और कुछ रखा हुआ है साइड मे भी कुछ रखा है ।

यंहा पर बोहत बड़ा पोस्टर लगा है ।

यहा पर बड़ा-सा पोस्टर है केनरा बैंक लिखा है ऊपर सेंटर है वे खिड़की दिख रही है।

यहा सारा कुछ-कुछ रखा हुआ है नीचे टाइल्स लगा है।